फर्श है सफेद दीवारे पुती है उसमे नीले रंग का एक बोर्ड लगा हुआ है गे-दरवाजा दिख रहा है हाथ-धोने के जगह दिख रही है।

सफ़ेद और आसमानी रंग का और पानी भी बहोत सुंदर दिख रहा है इसके अंदर खम्बा भी दिख रहा है एक पीछे।

एक लड़का काले रंग की और नीले रंग के कपड़े पहने खड़ा दिख रहा है हरे-हरे थोड़ा घास पेड़ पौधे भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं ऊंचाई पर जाते हुए पहाड़ देख रहे हैं पत्थरों के।

नीले कलर्स का कभी कुछ पोता हुआ दिख रहा है और जालियाँ दिख रही हैं लाल रंग से भी पोता हुआ दिख रहा है।

जगह का चित्र है जहाँ खाने कि मेज़ और कुर्सियाँ रखी हुई दिख रही है कुर्सियाँ बहुत अच्छे रंग की है ऊपर छत पे पंखे लगे हुए है।

यह चित्र किसी बेकरी का दिख रहा है जिसमें कांच का शोकेस लगा रखा हुआ है नीचे कत्थई कलर से पोता हुआ है उसमें केक दिख रहे है रखे हुए।

हरी-हरी घास नजर आ रही है बाहर और सफ़ेद सफ़ेद भी पोता हुआ दिख रहा है ऊपर आसमान सफ़ेद रंग का दिख रहा है।

नीचे जाली है ला-लाल रंग की उसके नीचे दरवाज़ा दिख रहा है।

दरवाज़े की छत सफ़ेद है उसके ऊपर हरे रंग स-का के कांच दिख रहे हैं।